इसमें जाली के दरवाजे भी है और इसके पीछे एक हॉस्टल भी है और द्रख़्त भी है।

और इसके साथ ही एक टोअर भी लगा हुआ है और --

हुआ है उधर से एक दो और भी है जो गाड़ियों ने स्टॉप किया हुआ हे।

हॉस्टल वगैरा ये कुछ बना हुआ हे ऐसा कोई चीज हे।